जहाँ शादी हो रहा है वहाँ बहुत से आनंद ले रहै है जो शादी कर रहै है वहाँ पे --

यहाँ पे जो एचडीएफ बैंक हैं जहाँ लोग बैंक में आते --

जो लोगो का यहाँ पैसा अच्छा से रखा जाता है।

जैसे की मगरमछ कुछ अन्य प्रांणी भी --

अपना सेहद तंदरुस्त करने के लिए लोग यहाँ - यहाँ --

ले जाते रहते है अन्य प्रकार का काम आता है ले--

यहाँ पे सामाजिक समारोह उत्सव होने वाला है जो यहाँ शादी का डेकोरेशन किया जा रहा है।

के लिए जो पूजा पाठ सामाजिक में सेवा के लिए यहाँ पे आते है जो लोग --

घूमने के लिए निकल रहै है और बहुत नजारा है।

फादर्स वगेरा सिस्टर्स वगेरा--

लोग भी है और सामने से सूर्य की रोशनी --

आ रहै है जा रहै है पैसा निकालने के लिए --

यहाँ पे रेल प्लेटफॉर्म की यहाँ सीढ़ी है जो लोगो को आना जाना का सुविधा होती है जो --

बिगड़ भी जाता है और नया सामान लगाया भी जाता हैं।

जो यहाँ पे अन्य स अन्य सामान --

समारोह यहाँ सगाई का समारोह किया गया है जो लोग यहाँ पे --